यहां पर लाल और पीले रंग के कपड़े से सजावट की गई है।

इस दुकान पर एक काउंटर भी लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे तारे भी रखी हुई हैं।

यह एक मार्केट की तस्वीर है इस मार्केट में बहोत सारी दुकान है।

यह लोहे से बने हुए हैं सभी चेयर पे कुछ लोग बैठे हुए हैं।

सब पढ़ाई कर रहे हैं यहां सामने एक भगवान की तस्वीर रखी हुई है।

यहां पर एक औरत लाल रंग के कपड़े पहनकर सामने खड़ी है।

यहां पर बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है इस तस्वीर में एक साइकल भी दिख रहा है।

यहा पर एक पेड़ भी दिख रहा है इस पेड़ के पत्ते हरे रंग के है।

यह किसकी दुकान की तस्वीर है यह दुकान इलेक्ट्रॉनिक्स की है।

यहां पर बहोत सारे पौधे भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में सीमेंट से बने ब्लॉक भी दिख रहे हैं।

यहां पर दिन का समय हो रहा है।

यहां पर एक आदमी एक चेयर पे बैठा हुआ है।

यह आदमी लाल रंग का शर्ट और वाइट रंग का पेंट पहना है।